ये कोई टेलर की शॉप है जो जेंट्स के कपड़े सिलता है।

और उसके नीचे नाम लिखा हुआ है।

इसमें दो लड़ अंकल और एक कोई आंटी दिखा रखी है।

ये एक फोटो दिखा रखी है।